यहाँ पे सड़क पे कुछ लोग बाइक मे जाते हुए नज़र आ रहे है। किनारे में एक पिक उप भी खड़ी हुई है उसके बीच में कुछ बिल्डिंग सा बना हुआ दिखाई दे रहा है और लाइट भी दिखाई देती हुई नज़र आ रहे है पेड़ भी लगे हुए है।

यह एक जिम दिखाई दे रहा है इसके अंदर सरे जिम के कुछ वरण दिखाई देते हुए नजर आए --

यह एक कमरा है जिसके नीचे में बहुत सारे कुर्सी लगे हुए है बीच में टेबल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर में पंखा सब भी लगे हुए नज़र आ रहे है।

सडक के बीचो-बीच में दो कार चलती हुई नज़र आ रही हैं उस के किनारे में कुछ कार को भी रखे हुए हैं जो की बहुत साल पहले उसके बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यह एक गुप्ता वस्त्राालय है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े को रखे गए हैं और कुछ छोटे-छोटे बच्चे के भी रखे हुए हैं नीचे में कुछ प्लास्टिक में भी कपड़े सब दिखाई दे रहे हैं अंदर में कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है कुछ दूर में खिड़की भी दिखाई देती हुई प्रतीत हो रही है।

अच्छे से लगाए हुए है। दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा है।

उसके नीचे में कुछ लकड़ी सा दिखाई दे रहा है कुछ दूर में वन भी दिखाई देते हैं और कुछ मठमेला भी दिख रहा है।

और एक बच्चा देख रहा है जैसे लग रहा है और दरवाजा खुला हुआ है।